यहाँ पर मुझे पेड़ दिख रहे है जो जिसके किसके पत्ते ग्रीन कलर के है बीच में मुझे और पेड़ दिख रहे है जो कि ग्रीन कलर के है।

यहाँ पर मुझे दो गमले भी दिखाई दे रहे है जो की ब्लू ओर रेड कलर के है पीछे मुझे बहोत सारे फ्लावर दिख रहे है।